जिसमें बहुत सारी बसें खड़ी हुई हैं।

एक आदमी भी दिख रहा है।

और एक बोर्ड लगा हुआ है मॉडर्न बेकर्स नाम से।

इस फोटो में एक पार्क है।

एक सिल्वर कलर की रेलिंग भी लगी हुई है।

और एक स्टूल भी दिख रहा है।

छत पर बहुत सारे गुब्बारे लगे हुए हैं येलो पर्पल कलर के।

एक येलो कलर का बैनर भी लगा हुआ है।

इस फोटो में तीन लोग दिख रहे हैं।

और एक वाइट कलर का स्विच बोर्ड भी लगा हुआ है।

अंदर जाने के लिए गेड भी दिख रहा है।

इस फोटो में एक पेट्रोल पंप है सफेद नीला और लाल कलर का।

बहुत सारी घासें से लगी हुई हैं।

बहोत सारे गमले दिख रहे हैं।

जिसमें छोटे छोटे पेड़ भी लगे हुए हैं।

इस फोटो में एक सफेद कलर की मस्जिद है।

एक दुकान पर बहोत सारे लोग दिख रहे हैं।

इस फोटो में एक स्टोर है।

और चार पंखे भी लगे हुए हैं।

छत टीन की बनी हुई है।

सामने एक बोर्ड लगा है यूनिवर्सल बुक सेलर्स का।

उसकी छत पर टीन डली हुई है।

और बाहर एक आदमी खड़ा हुआ है।

एक आदमी भी बैठा हुआ है।

और रैक में बहुत सारे सामान रखे हुए हैं।

एक हरी कलर की पानी की टंकी भी है।